इस फोटो में तीन ड्रेस है बीच में एक स्टैंड है।

इस फोटो में एक लड़की डांस कर रही है स्टेज पे रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

ऊपर लाइट्स है पर्दे है कई तरह के--